यह एक पेट्रोलपंप दिख रहा हैं और यहां बहोत--

जैकेट पहनी है और यहां शीशे का दरवाजा दिख रहा है। बहोत सारी चेयर्स दिख रही है।

यह एक शॉप दिखाई दे रही है यहां पे छत दिक अ छत दिखाई दे रही है।

खिड़कियां दिख रही हैं और यहां बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं।

भी दिख रहा है और यहां गुब्बारे भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां नैपकिन दिख रहे हैं दीवार दिखाई दे रही है दीवार पे विंडो बनी हुई है और उसके ऊपर छोटे छोटे फूल के गुलदस्ते रखे हुए हैं।

पर्स दिख रहे है और डिब्बे भी दिखाई दे रहे हैं पानी की बॉटल्स दिख रही हैं और डस्टबिन दिख रहा है।

चाप ब्लेजर दिखाई दे रहा है और यहां बोर्ड भी दिख रहा है।

और बाहर शीशे का दरवाजा लगा हुआ है।

और यहां क्रेट भी दिखाई दे रहा है।

और यहां वीवो लिखा हुआ है रियलमी के डिब्बे दिख रहे हैं और यहां जियो फोन --

केबिनेट्स में बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

और यहां पेड़ भी दिख रहा है।

काउंटर दिखाई दे रहा है काउंटर पे फोन पे का कार्ड दिख रहा है।